अपने मरोर मनोरंजन के लिए बहुत सारे गेम खेलते हुए नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में कपड़े के शॉप का--

यहां चित्र में एक झरने का दृश्य दिखाया गया है।

इस चित्र पर एक झरने का चित्र दर्शाया गया है।

बहुत ही सुंदर प्राकृतिक की सजावट है और यहां देखने में बहुत सुंदर दिख रहा है।

यह दृश्य एक सुंदर सी मैदान का दिखाया गया है जिस पर एक महिला खड़े होकर--

यहां चित्र बहुत ही सुंदर बगीचे का है यहां पर एक व्यक्ति अपने गुण से--

यहां दृश्य में एक छोटे से सोने की दुकान का दृश्य दिखाया गया हैं यहां पर सेलर बैठ कर के अपनी--

एक नीली कलर की कार खड़ी हुई नजर--

अनेक प्रकार के व्यक्ति बैठकर खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं।

कई सारे साइकिल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं।

इस चित्र पर एक सब्जी मंडी का चित्र दर्शाया गया है।